प्रोग्राम होते हुए दिख रहा है। बाउंड्री लगी हुई है सामने।

के पास में एक घर दिख रहा है। उसमें शटर दिख रही है। बंद है वो।

येलो कलर की बड़ी सी बोट तो सामने ही दिख रही है।

एयरपोर्ट के सामने बड़ी -सी दुकानें दिख रही हैं।

ये ऑफिस का दिख रहा है ये ऑफिस दिखाई दे रहा है।

मंदिर दिख रहा है ये मंदिर है।